किसी बस स्टैंड की तस्वीर है जिसमें एक व्यक्ति बस को पकड़ रहा है और उसके एक हाँथ में पिंक कलर का बैग है और पीठ पे एक ब्लू कलर का बैग रखे हुए है।

कोच ने हाँथ में वाइट कलर का ग्लोव्स पहन रखा है चेहरे पर एक फेस मास्क लगा रखा हुआ है।

--ओर साइड में एक येलो कलर का गुलदस्ता रखा हुआ है डॉक्टर ने अपने हाँथ में कोई मशीन से पेशेंट की पीठ को मसाज कर रहे है।

बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीर है जिसमें फोर स्टेप स्टेर्स लगे हुए हैं मैडम अपनी स्पीच को डिलिवर कर रही है।

और हाथ से पैरों को टच कर की हुई है और सूर्य आसमान में लाल दिखाई दे--

यह किसी धर्मिक स्थल की पैसेज की तस्वीरें है जिसमें काफी पिल्लर्स को दिखाया गया है साथै में ऊपर छत को दिखाया गया है इसमें एक साइड में रेलिंगस लगी हुुइ है।

यह एक मेडिकल टूर है जिसमे एक पेशेंट अपनी दवा को लेने के लिए फार्मेसी से कुछ कंसल्ट करते हुए दिखाया गया।

--और यह फार्मासिस्ट उनको दवा के बारे में गाइड करते हुए दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक रूम को दिखाया गया है जिसके अंदर दो बंदे है जो किसी चीज को बड़े गौर से देख रहे है।

नाई फ़ोन पर बात कर रहा है एक व्यक्ति बैठा है बाल कटाने के लिए।

यह एक पहाड़ का अद्भुत दृश्य है जिस पहाड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाया गया है इसमें आसमान के काफी अच्छे रंग दिखाए गए है।

नीचे पार्किंग के लिए पैसेज बना हुआ है ऊपर वाइट और ग्रे कलर में टाइल्स लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक व्यक्ति बहार रेड टी-शर्ट में खड़ा है और इस बस में यलो रंग की पट्टी बनाई गयी--

पीछे जीसस का पुतला लगा हुआ है और सबलोग ट्रेंडिंग पोजीशन में फोटो ले--